ये हॉस्पिटल दिख रहा हैं बहोत अच्छा हॉस्पिटल हैं ये कलकत्ता का हॉस्पिटल दिख रहा हैं और उसके बगल में भी बहोत बड़ा मकान दिख रहा हैं आगे रोड सब भी दिख रहा हैं।

पार्क बहोत सुंदर पार्क दिख रहे हैं। हरे भरे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। बड़े बड़े पे- पेड़ भी लगा हुआ हैं। बड़े बड़े सुंदर पेड़ सब भी लगा हुआ है। बहोत सुन्दर लग रहा है ।

ये चौड़ी नदी दिख रहा है। बहुत बड़े पेड़-पौधे सब ये दिख रहा है। बीच में नाव भी दिख रहा है। उसमें बहुत सुन्दर पानी लग रहा है।